लेफ्ट साइड भी मेट्रो की मेट्रो लाइन बनी हुई है और राइट साइड में मेट्रो लाइन की लाइन बनी हुई है।

इसकी चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है और एक तरफ पेड़ पर एक पेड़ लगा पेड़ दिखाई दे रहा है।

ये एक बिल्डिंग की फोटो है नीचे की तरफ जो नीचे अंदर की तरफ बिल्डिंग बनी होती है वहां की पिक्चर है।

यहां पे दोनों वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलता है।

स्टेशन के बाहर एस_बी_आई ए_टी_एम बैंक --

यह स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

विवाह के मंच पे जोड़े और विवाह समारोह के लिए एक केंद्र बिंदु और पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करना है।

लकड़ी का फर्नीचर एक डिशपे फ्रिज और एक काउंटर का बाहर क्षेत्र दिखाई देता है।

जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं चेयर्स पे उनके सामने टेबल्स लगी हुई हैं।

लेफ्ट साइड में स्कूटी खड़ी हुई है।

लीवर की एफिशिएंसी दिखाई जा रही है धूप में।

और फ्रंट में ग्रीन बैकग्राउंड है।

यह किसी पार्टी या होटल की फोटो है जिसमें लोग खाना खा रहे हैं डिनर का टाइम है।

मनकामेश्वरमं मंदिर की फोटो है।

इसकी नेचुरल ब्यूटी को दर्शाता है।

आदमी अंदर है जो पैसे निकाल रहा है एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है गेट के जो वेट कर रहा है अंदर जाने का।

और हिंदी में मंडलायुक्त कार्यालय लिखा हुआ--

कांच का काउंटर है जिसके अंदर केक पेस्टीज रखी हुई हैं।

मे बैलुंस लगे हुए हैं रेड कलर के पर्पल कलर के व्हाइट कलर के ब्लू कलर के।

एक किराने स्टोर की शॉप है।